रखे है कुछ डिवाइस रखी हुई है साथ ही साथ ढेर सारे मोबाइल स्टे--

यहां एक गैराज है इसमें एक कार खड़ी है सामने एक --

और वो लोग इस कार की रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं और इसको रिपेयर कर रहे हैं साथ--

की हुई है जो कि जिम करने के लिए है और भी व्यक्ति खड़े--

यह एक मॉल है स्विथा के नाम का इसमें बहोत सारे डमी हैं।

में बहुत ही सारे कपड़े हैं जो सस्ते और अच्छे मिलते हैं।

यहां पे की ज्वैलरिस मिलती हैं।

की होटल के रिसेप्शन का पिक्चर है जिसमें चार घड़ियां लगी हुई है एक दो कुर्सियां हैं।

और यहां पर कुछ पत्तियां भी है जिसमें कई त--

और घर के बगल में बहुत सारी बटन्स हैं जीसमे --

और एक कार भी खड़ी हुई है साथ में बहुत सारे पेड़ है।

ऊपर एक सोलर प्लांट लगा है और पेड़ है बगल में छोटा सा बगीचा टाइप --

की स्टेशन का सीन है इसमें सुधा।

खाने पीने का समान रखा है सामने शेरा नाम का एक हिनन है जिसमें--

ये छोटा सा पार्क टाइप का है बगीचा टाइप का--

सामने लिखा है अदला बदली नहीं होगी कोई भी सामान की पैंट शर्ट व लोवर टोये चाते है।

एक हॉस्पिटल है इसका नाम है मैंस मल्टी स्पेशलिस्ट होस--

एक कार एक वैन खड़ी हुई है।

और पानी बहुत ही गहरा है समंदर भी दिखाई लग स--

और ग्लोब शैंपूस लटके हुए हैं और साथ ही साथ कुछ खाने का सामान भी रखा हुआ है।

इसमें रात का सीन दिखाया गया है और यहां पेड़ है।

और आम बेचने वाला भी गायब हो गया है एक औरत उधर से आम को खरीदने--

इसमें सभी लोग बैठे हुए हैं और--

और बहोत सारे चॉकलेट्स रखे हुई हैं।

के खाना बनाने वाले जो कि अलग-अलग कंपनी के हैं।

ये अलमीरा बहुत ही प्यारी लग रही है बॉल का कलर ब्लैक और वाइट --

रेड कलर की है जो कि देखने में बहुत ही प्यारी दिख रही है।

यहाँ गणेश अ विसर्जन का सीन दिखाया गया है।

इसमें गणेश जी को लोग पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग फोटो खींचा रहे हैं सभी लोग --

कृष्ण टुटोरिअल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल एण्ड विद सी_बी_एस --

कही सारी प्लेटें रखी हुई है इसमें चावल--

ये कार जो ब्लैक कलर कि है वो बहुत ही प्यारी लग रही है वाइट कलर की इसके पीछे खड़ी है दो तीन व्यक्ती आ --

यह एक खिलौने की दुकान है इस दुकान में बहोत सारे खिलौने हैं।

किसी साइकिल हैं बच्चों की साइकिलें हैं और कुछ--

ये एक माल है इस माल में कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं।